और इसके साइड आप देख रहे हैं रोड है और घर है बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

और नदी दिख रही है पानी दिख रहा है दूर दूर तलक यहाँ पे सारा यही दिख रहा है।

यहां पे आप देख रहे हैं ये मंदिर टाइप या घर टाइप है और यहां पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

उसपे भी पेन वगैरह रखे हुए हैं ये लाइब्रेरी है आई थिंक उधर एक लड़का बैठा हुआ है बोतल रखी है उसने अभी --

ये यहां पे पढ़ाई वगैरह कुछ कर रहे हैं से बिकॉज ये लाइब्रेरी लग रही है।

इसके आगे स्टेयर्स हैं और इसके आसपास झाड़ियां हैं ग्रीन ग्रीन कलर की जो दिख रही है मंदिर के ऊपर देख सकते हैं स्काई दिख रहा है वाइट कलर --

ये एक मॉल जैसा है और ये ऊपर का फ्लोर है या जो भी है फ्लोर है और यहाँ।

और बाहर आप देख सकते हैं दो कैरम लगे हुए हैं और बाहर एक काउंटर रखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है विजय पुस्तक भंडार--

यहां पे आप देख सकते हैं यह मार्केट एरिया है और यहां पे कई लोग अपनी-अपनी दुकान लगा के बैठे हैं।

और यहां पे घर भी दिख रहा है उस घर में कोई दिख नहीं रहा है।

और यहां पे ब्यूटीफुल सी चेयर्स पड़ी हुई है ये लोग बैठे हुए हैं।

ये आप देख सकते है बाइक शॉप है स्कूटी है स्कूटी है ट्रक है ।

उस साइड आप देख सकते हैं वजपेशन दिख रहा है इस साइड --

ये एक क्लब है क्लब में लोग डांस करते हैं और लड़के भी करते हैं लड़कियां भी करती हैं।

और इधर एक चेयर भी पड़ी है और नीचे जमीन में--

जीएस पे फोन चला रही है कुछ आपस में बात कर रही हैं और उधर आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सा झूमर लगा हुआ है।

ए_सी लगी हुई है और ये बहुत सुंदर सी डेकोरेशन हो रखी है यहां पे--